यहां पर दो शेर बैठे हैं उनका कलर पीला और कला है।

यहां पर एक बड़ी सी बोर्ड दिख रही हैं उस बोर्ड में हरा पीला नीला--

छोटे छोटे से पाउडर रखे है काले ब्राउन रंग के--

ब्लैक कलर की कुर्सी रखी है।

हैंडल रेड और येलो रंग के दिख रहे--

यहां पर कुछ लोग योगा कर रहे हैं वहां पर योगा के मैट रखे हैं हरे गुलाबी।